और माइक भी लगे हुए हैं। पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक दुकान का चित्र है यहाँ पर खंभा लगा हुआ है और नीले कलर की सटलें डली हुई हैं।

यह चित्र एक मंदिर का है। इस मंदिर का नाम श्री बाल मिथ्यास मंदिर काल्पी है।

यह एक मस्जिद है। जिस पर कलर नहीं पुता हुआ है। गेट कत्थई रंग का है और काले कलर की सामने पन्नी डली हुई है।

यह एक दुकान है इस दुकान का नाम मोटोमेच टू व्हीलर सर्विस स्टेशन सर्विस स्पेसिलेशन नाम है।

यह लाल कलर की दुकान है और काले तथा सफेद कलर के अक्षर है और एक आदमी वहाँ पर काम कर --